java में type conversion के spoken tutorial में आपका स्वागत है
इस tutorial में हम सीखेंगे:
data को एक data type से दूसरे में कैसे convert करते हैं
कन्वर्जन के दो प्रकार होते हैं implicit एवं explicit कन्वर्जन और
strings को numbers में कैसे convert करते हैं
इस tutorial में हम प्रयोग करेंगे
इस tutorial के लिए आपको java में data types का ज्ञान होना चाहिए
यदि ऐसा नहीं है तो उचित tutorials के लिए कृपया हमारी निम्न website पर जाएँ
type conversion का अर्थ एक data type से दूसरे में बदलना है
देखते हैं कि यह कैसे किया जाता है
eclipse पर जाएँ
यहाँ हमारे पास शेष code के लिए आवश्यक eclipse ide और skeleton है
मैंने typeconversion नामक एक class बना लिया है और इसमें main method को शामिल कर लिया है
अब कुछ variables निर्मित करते हैं
int a equal to 5
मैंने दो variables बना लिए हैं a जो एक integer है और b जो कि एक float है
मैं एक float variable में integer integer value स्टोर कर रही हूँ
देखते हैं कि अब float float variable में क्या शामिल है
system dot out dot println b;
फ़ाइल को सेव और रन करें
हम देख सकते हैं कि integer 5 float 50 में बदल गया है
इस प्रकार के कन्वर्जन को implicit कन्वर्जन कहा जाता है
जैसा कि name से स्पष्ट है मान स्वतः ही data type के अनुसार बदल data है
अब उसी विधि का प्रयोग करके float को एक int में बदलते हैं
5 हटायें float b equal to 25f और b को a में store करते हैं और a की value print करता है
फ़ाइल को सेव करें
हम देखते हैं कि वहां एक error है
वह error message देता है type mismatch: cannot convert from float to int
इसका अर्थ है कि implicit conversion केवल एक int से एक float में संभव है दूसरी तरह से नहीं
एक float को एक int में convert करने के लिए हमें explicit कन्वर्जन का प्रयोग करना होगा
अब देखते हैं कि ऐसा कैसे करते हैं
हम ऐसे variable के पहले परेन्थेसिस में एक int का प्रयोग करके करते हैं
यह statement बताता है कि variable b में data को int data type में converted किया गया है और a में stored किया गया है
file को सेव और रन करें
जैसा कि हम देख सकते हैं float की value int में बदल गयी है
किन्तु data type के अनुकूल होने के लिए data को तदनुसार बदल दिया गया है
explicit कन्वर्जन का प्रयोग int को float में बदलने के लिए भी किया जा सकता है
पिछला उदाहरण let हैं
int a = 5 float b b = float a
system out println b;
हम integer के एक float में कन्वर्जन के लिए explicit कन्वर्जन का प्रयोग कर रहे हैं
फ़ाइल को सेव और रन करें
हम देखते हैं कि int value को एक float value में बदल दिया गया है
देखते हैं कि क्या होता है जब हम एक character को एक integer में बदलते हैं
int a char c equal to single quotes में m;
a equal to int c
system dot out dot println a;
हम character m को एक integer में converting कर रहे हैं और value को प्रिंट कर रहे हैं
इसे सेव और रन करते हैं
जैसा कि हम देख सकते हैं कि output 109 है जो m की ascii ascii value है
इसका अर्थ है जब एक char को int में बदला जाता है इसकी ascii ascii value को stored किया जाता है
एक अंक के साथ यह करते हैं
char c = अंक 5
इसे सेव और रन करें
जैसा कि हम देख सकते हैं output 53 है जो character 5 की ascii value है
यह संख्या 5 नहीं है
संख्या प्राप्त करने के लिए हमें एक string का प्रयोग करना होगा और इसे integer में convert करना होगा
अब देखते हैं कि ऐसा कैसे करते हैं
main function को हटायें
type करें
string sheight height का string रूप equal to double quotes में 6
int h equal to explicit कन्वर्जन int of sheight और
system dot out dot println h फ़ाइल को सेव करें
मैंने value 6 के साथ एक string variable बना लिया है और मैं इसे एक integer में convert करने जा रही हूँ किन्तु हम देखते हैं वहां एक error है
और यह error message प्रदर्शित करता है cannot cast from string to int
इसका अर्थ strings को converting करने के लिए है हम implicit या explicit कन्वर्जन का प्रयोग नहीं कर सकते हैं
यह अन्य methods द्वारा किया जाना चाहिए उनका प्रयोग करते हैं
int sheight हटायें और type करें integer dot parseint sheight
फ़ाइल को सेव और रन करें
हम देखते हैं कि value को सफलतापूर्वक एक integer में बदल दिया गया है
ऐसा करने के लिए हम integer module के parseint method का प्रयोग करते हैं
अब देखते हैं कि क्या होता है यदि वहां एक से अधिक अंक हों जैसे 6543
फ़ाइल को सेव और रन करें
हम देखते हैं कि पुनः संख्या को शामिल करने वाली string को सफलतापूर्वक एक integer में बदल दिया गया है
अब देखते हैं कि क्या होता है यदि string एक floating point number हों
6543 को 6543 बदलें अतः हमारे पास string में एक floating point number है और हम इसे एक integer में बदल रहे हैं
फ़ाइल को सेव और रन करें
हम देखते हैं कि वहां एक error है यह होता है क्योंकि हम एक string को एक integer में नहीं बदल सकते हैं जिसमें floating point number शामिल है
हमें इसे एक float में बदलना होगा देखते हैं कि ऐसा कैसे होता है;
पहला data type float होना चाहिए
दूसरा हम float parsefloat का प्रयोग करेंगे
हम एक floating point number वाली string को एक वास्तविक floating point number में convert करने के लिए float class की parsefloat मेथड्स का प्रयोग कर रहे हैं
फ़ाइल को सेव और रन करें हम देख सकते हैं कि एक floating point number वाली string को सफलतापूर्वक एक floating point number में converted कर लिया गया है
और इसी तरह हम implicit और explicit कन्वर्जन करते हैं और कैसे हम strings को numbers में convert करते हैं
यह हमें इस tutorial की समाप्ति पर लाता है
इस tutorial में हमने सीखा कि data के एक प्रकार को दूसरे में कैसे convert करते हैं
implicit और explicit कन्वर्जन से क्या तात्पर्य है
और strings को numbers में कैसे convert करते हैं
इस tutorial के लिए एक नियत कार्य के रूप में integer tostring और float tostring के बारे में पढ़ें
और पता लगाएं कि वे क्या करते हैं
spoken tutorial project के बारे में अधिक जानने के लिए निम्न link पर पर उपलब्ध video देखें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
यदि आपके पास अच्छी bandwidth नहीं है तो आप इसे download करके देख सकते हैं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
अधिक जानकारी के लिए कृपया contact at spoken hyphen tutorial dot org पर लिखें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
यह स्क्रिप्ट प्रभाकर द्वारा अनुवादित है मैं श्रुति आर्य आपसे विदा लेती हूँ हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद